एक हॉल में फोरवीलर रखी है कुछ टायर दिखाई दे रहे हैं और मशीन उत्तर रही हैं इट दिखाई दे रहा हैं।

प्रियदर्शिनी दिख रही है कुछ दिख रहे हैं। बैट दिख रहे हैं बॉल दिख रहे हैं डॉल दिख रही है बैलून्स दिखाई दे रहे हैं।

एक मैदान दिख रहा हैं मैदान में बाउंड्री दिख रही हैं एक एयरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा हैं।

एक हॉल दिख रहा हैं हॉल में एक बहुत ही बड़ा सा झूमर दिख रहा हैं कुछ टेबल दिख रहे हैं चेयर दिख रहे हैं।